चॉकलेट -उकलेट का है डब्बा रखा हुआ है बहुत सारे साइड में बिस्कुट भी रहा हुआ है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है --

यहाँ पे ये जो किराना दुकान है कुरकुरे-उरकुरे टांगा हुआ है चिप्स-उप्स है जो खाने वाला जो चोको --

शटर एगो आधा खुला है ।

रात का समय है पोस्टर लगे हुए है आल इन फॉर्म आर.बी.आई. इत्यादि भराता है और --

फैक्ट्री है जो खराब है काम फेका गया उसी का उसी का --

जो यहाँ पर देख पा रहे हैं गौतम बुद्ध का धातु से बना हुआ पत्थल में बना हुआ है जो देखने अच्छा लगा रहा है ।

साइड से देख रहे है बहुत सारे हिरन हिरन आ रहा है घिरे हुए हैं धातु से घिरे हुए हैं. बहुत सारे फील्डे उधर देले हुए हैं ।

और खाना-उना खाना है माइक लगा हुआ है अच्छा लगा रहा है बहुत लोग आए है ।

और यहाँ पे पहाड़ है और कुछ नहीं बादल लगा हुआ है ।

एक्सिस बैंक है और यहाँ पर रोड -उड हैं यहाँ पे तार-उर लगा हुआ है और हमारी --

जो ए.टी.एम. है बहुत लोग आए है निकालने के लिए एस.बी.आ.ई बैंक ए.टी.एम. है जो साइड में ए.सी. लगा हुआ है ।

और इधर से शीशा-उषा लगा हुआ है और चप्पल-उप्पल सर आए है और नीचे कुर्सी उतरने वाला है जो लाइट -उइट लगा है सीसी --

हमारे शोरूम है जो कपड़ा शोरूम जो कटपुतला है प्लाज़ो-उलाजो पहनाती है और साइड में फ्राक उराक इत्यादि --